साइड में कुछ मट्टी-वट्टी दिखाई जा रहे हैं घास वास दिखाए जा रहे हैं बड़े-बड़े से पेड़ दिखाए जा रहे बालू-वुलू दिखाई जा रही हैं एक बहुत बड़ा सा तलाव हैं।

एक बहोत बड़ा सा गैरेज टाइप का दिखाया जा रहा है जिस पर एक कार रखी गई है कार के हैंडल खुले हुए हैं आगे पे।

आगे के मशीन मशीन भी दिखाए जा रहे कार के डिग्गी उग्गी खुले गए हैं दीवाल हैं दीवाल पर लिखा गया हैं अमरजीत और टोन--

एक लड़का को दिखाया जा रहा हैं जो कि फोटो वोटो क्लिक कर रहा हैं और वह गंजी और ब्लैक कलर का जींस पहने हुए हैं हाथ में फोन लिए हुए मिरर के पास--

में हैं और कुछ लाइट्स वाइट्स ऊपर में लगी हुई हैं नीचे पे कारपेट वुरपेट बिछाए गए हैं रेड में--

ब्लैक में कुछ गद्दे गद्दे टाइप के डंबल सुंबल्स भी दिखाए जा रहे हैं बहुत सारे कलर किए गए हैं।

फोन का छोटा सा शॉप दिखाया जा रहा हैं जिसके पर एक टेबल हैं टेबल के नीचे पर ओप्पो लिखा हुआ हैं और बगल पर पीछे पर एक बोर्ड हैं बोर्ड पर भी ओप्पो लिखा गया हैं बहुत सारे--

एक बहुत बड़ा सा रोड दिखाया जा रहा हैं रोड पर दो लड़के को दिखाया जा रहा हैं एक और लड़के को दिखाया जा रहा हैं एक लड़का माथे पर रुमाल रुमाल बांधे हुए --

वाइट्स दिखाए जा रहे हैं कुछ चिमचिम कि ली टाइप के करे हुए दिखाए जा रहे हैं और साइड में और भी लाइट वाइट--

एक स्कूल दिखाया जा रहा हैं स्कूल के बाहर पर गेट हैं गेट के दो तरफ पिलर बना दिए गए हैं उसमें काँच उसमें मार्बल वुरबल लगा दिए गए हैं ब्राउन कलर कर और दो--

पिलर गाड़ दिए गये हैं लोहे के उसके बीचो-बीच पर एक बोर्ड हैं बोर्ड पर लिखा गया जेएम के इंटरनेशनल स्कूल --

और अंदर पे स्कूल के बहुत सारे वैन वैन खड़े हैं कुछ स्कूल हैं स्कूल में सारी विंडो हैं पानी के टैंकी वंकी खिड़कियाँ खिड़कियों पर काँच-वाँच हैं।

कुछ नेस्ट्रॉन के डब्बे उब्बे रखे गए नीचे मार्बल वुरबल बिछाए गए हैं तार वार हैं कुछ चिप्स विप्स के भी पैकेट वैकेटरखे--

एक बाइक खड़ी हैं और बांस से गड़ा हुआ हैं चारों ओर से एक बाइक दो-तीन आदमी हैं जो कि बैग वैग लिए हुए हैं।

एक छोटा सा शॉप दिखाया जा रहा हैं जिसमें बहुत सारे अ डीजल विजल रखे गए हैं रॉयल इनफिट बार पर बोर्ड हैं।

और सोलर लाइट्स लगा दिए गए हैं और चारों ओर लाइनिंग वाइनिंग के लिए पाइप वाइप टाइप के लगा दिए गए हैं सभी में कलर कर दिए गए हैं।

में उसके मुंह के अंदर से स्लिप करने का जगह टाइप का बना दिया गया हैं और चारों और--

एक रोड दिखाया जा रहा हैं रोड पर एक स्कूटर खड़ी हैं एक बाइक एक कार जा रही हैं दो बाइक आ रहे हैं एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा हैं।

ये सब सब मिलता हैं वो बोर्ड पर लिखा गया हैं अंदर पर कुछ अंडे-वंडे के ट्रे वरे रखे गए हैं।

एक घर दिखाया गया है जो की काफी बड़ा सडा दिखाया जा रा है उसमें बहोत बड़े बड़े से पेड़ दिखाई जा रे--

एक मोटर्स का शॉप दिखाया गया है जोकि बहुत छोटा सा है बगल में एक छोटा सा शॉप है जिसपर एक --

और कुछ साइकिल वाइकल है जिसे रिपेयरिंग किया जा रहा है और चारों ओर खेत खेत टाइप का दिखाया जा रहा है रोड वोड दिखाई जा रही है।

एक छोटा सा शॉप दिखाया जा रहा है जिसमें बहोत सारे सामान उमान रखे गए हैं और बहोत सारे डब्बे उब्बे में है एक लड़की है जो की साइड पर्स ली हुई है वह--

समान उमान लेना चाह रही है और अंदर पर कुछ कार वार रखे गए हैं टेनिस उनिस है डॉल वॉल है बॉल वॉल है कुछ खिलौने उलोने हैं एक--

एक घर दिखाया जा रहा है घर के बाहर का सीन दिखाया जा रहा है जिसमें बहुत बड़ा सा एक पेड़ है पेड़ पर भी वो छोटे छोटे पौधे वौधे हो चुके हैं एक गार्डन टाइप का बना दिया गया है।

और उसके अंदर में भी बहुत सारे पौधे वौधे हो चुके हैं ऊपर ऊपर चढ़ गए बिचाली विचाली से घेरा गए एक लकड़ी का --

एक हॉस्पिटल के बाहर का जगह दिखाया जा रहा है जिसके अंदर पर एक कैबिन दिखाई गई है खिड़की हैं खिड़कियों पर काँच लगाई गई हैं गेट पर भी काँच है ऊपर पर सिलिंग फैन लगाए गए है।

एक रोड दिखाया गया रोड में बहुत सारे आदमियों को दिखाया गया बगल में एक होटल टाइप का बना दिया गया जिसमें कुछ आदमी वुदमी --

टांग वांग करके रखे गए हैं हैंगर पे एक लंबा सा पोल बना दिया गया है उसके चारों ओर हैंगर टाइप के --

लेडीज दिख रहे है दो जेंस दिख रहे है मिरर विरर भी दिखाई जा रही है कुछ कपड़ों को सरिया करके रखा गया है नीचे हमारा --

और अंदर पर वो चेयर है टेबल है बहुत सारे और एक लेडीज वेडीस है कुछ बर्तन वर्तन रखे गए जग है ग्लास है ग्लास पर कुछ समान वुमान रखे गए है।

इस्कूटी है एक बाइक है एक बाइक पर हेलमेट हुलमट दिखाए जा रहे हैं लोहे के गेट वेट टाइप के बना दिए गए हैं।

एक स्कूटर टाइप का रखा गया है मट्टी का रास्ता टाइप का दिखाएगा कंकड़ पत्थर है चारों ओर ग्रिल कलर ग्रीन लोहे के ग्रिल से घेर दिया गया ग्रीन कलर का --

और कपड़े-उपड़े हैं पाउडर्स हैं शैंपू हैं बहुत सारे सामान हैं जिन्हें सभी को सजा करके रखा गया हैं कुछ गार्डर वार्डर भी है कुछ नेल पेंट भी हैं।

एक रूम दिखाया गया है रूम पर एक बॉल टाइप का है बॉल पर काफी लाइट्स वाइस दिखाई जा रही है वाइट कलर पर है जो लटका कर के रखे गए है ।

सीलिंग फैन हैं बहुत सारे फोटो वोटो दिखाए जा रहे हैं एक कैबिन टाइप का दिखाया जा रहा हैं चेयर्स हैं और --

छोटा सा स्टेज दिखाया जा रहा हैं जिस पर बहुत सारे बैलून से डेकोरेट किया गया हैं जो कि पिंक बैलून हैं ऑरेंज है येल्लो हैं और बेबी पिंक हैं ।

एक छोटा सा जिम का क्लास दिखाया जा रहा हैं जिसमें बहुत सारे डंबल्स बंबल्स रखे गए नीचे पर ग्रीन कलर के कपड़े बिछाए गए हैं एक आदमी हैं --

कांच वांच लगाए गए हैं ऊपर लाइटिंग वाइटिंग का काम दिखाया गया है शोकेस टाइप का दिखाया गया है ग्रात--

एक होटल टाइप का दिखाया गया जिसमें बहुत सारे चेयर टेबल रखे हुए पर्दे हैं ब्लू ब्लू कलर पर हैं ऊपर वाइट कलर के पर्दे हैं नीचे पर और कुछ--